ये तस्वीर एक कार की है इसपे पीली प्लेट लगी हुई है। पीछे एक ईमारत --

इस चित्र में गाड़ी दिख रही है। अंदर दो गाड़ी दिख रही है। बिल्डिंग लाल रंग की है।

कुछ टेबिले रखी हुई हैं| पानी का कलर नीला है।

पीले फूल लगे हुए हैं। एक आदमी खड़ा हुआ है। एक सफ़ेद टोकरी में पीले फूल रखे हुए हैं।